यह गांव का पार्क जैसा दिख रहा है वहाँ से यहाँ कुछ नर्सरी है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है पौधा हैं।